यहां कार दिख रही है जो ब्लैक एंड वाइट कलर की है और ऊपर चैन बनी हुई है जो काली दिख रही है और एक आदमी--

गोल गोल कथाई कलर के कुछ रोल दिख रहे हैं और सीढ़ियां लगी हुई है ऊपर लाइट लगी है और दीवार पर एक घड़ी--

यहां एक अलवारी दिख रही है जो लकड़ी की बनी हुई है बीच में रैक बना है जिस पर एक गोल--

टब रखा हुआ है और ऊपर एक ऐ_सी लगी हुई है साइड में बहुत से रैक है जिसमें कुछ क्रीम ।

कुछ लिखा है और ऊपर टीने हैं साइड में कुछ कुर्सी रखी हुई है और--

हवा लिखा हुआ है एक नीला डस्टबिन रखा है सामने हाथ धोने का वॉश बेसिन लगा है।

यहां एक ठेला दिख रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे फल रखे हुए हैं।

तरबूज है संतरे है नींबू आंवला रखे हुए हैं और एक तखरी--

रखी हुई है नीली क्रेट रखी है जिसके बगल में एक खोका है जिस पर ऊपर--

एप्पल रखे हुए हैं पीछे एक मीटर दिख रहा है और एक--

पड़ी हुई है साइड में एक पीला पोस्टर लिखा लगा है जिस पर बसंत और--

बहुत कुछ लिखा हुआ है अंदर सीढ़ियां दिख रही है ऊपर नीला आसमान--

यहां ऊपर स्वेटर टंगी हुई है जो साइड की--

वहां बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं और पीछे मूर्तियां बनी हुई है जो शंकर जी--

उर्गा जी और कणेश कार्तिक जी पार्वती जी और हनुमान जी की बनी है और सामने एक पंडित है और दो--

यहां सड़क दिख रही है जो काली हैजिस पर पानी दिख रहा हैऔर दोनों साइड नीचे हरी घास--

बहुत से तार दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे पेड़े दिख रहे हैं साइड में एक पेड़ है जिसमें ऊपर पिंक कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं।

यहां बहुत सारे सोलर पैनल दिख रहे हैं जो नीले हैं जिनमें सफेद लाइन बनी हुई है और छत --

क्रॉस लिखा हुआ है और नीचे बीस रेसमरी लिखा हुआ हैऔर नीचे कांच का गेट लगा--

यहां एक मंदिर दिख रहा है जिसमें बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है उनके ऊपर टीने लगी हुई है और--

गोल्डन कलर का मुकुट लगा हुआ है और नीचे सीढ़ियां बनी हुई है चारों ओर बहुत--

सारे पेड़े दिखाई दे रहे हैं और सामने एक आदमी खड़ा हुआ है ऊपर साइड दोनों साइड झंडे लगे हुए --

हां एक स्टेज है जिस पर दुल्हा-दुल्हन बैठे हुए हैं और एक पंडित बैठा है पीछे--

नीले कलर की लाइट लगी हुई है और कुछ गुब्बारे लगे हुए--

वहां एक ए_टी_एम दिख रहा है जिसके बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है ऊपर नीला--

हरा बोर्ड लगा है और उसमें गोल चक्र बना है जो नीले कलर का है ऊपर स्टेट बैंक ए_टी_एम हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है।

बैगनी कलर की हैजिन पर तकिए रखे हुए हैं और सामने कोने में एक छोटा--

यहा एक टेबल दिख रही है जिस पर दो कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं सामने वाले कंप्यूटर पर एक पोस्टर चिपका है जिसमें--

सामने कुर्सी रखी है पीछे दीवाल पर बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं।

यहां एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें ऊपर लाल कलर पुता है जिस पर--

एक पीले और नीले कलर का मंदिर बना हुआ है दो मोटरसाइकिल दिख रही हैं एक नीली कार दिखाई दे रही है।

कहीं-कहीं ग्रीन और पिंक कलर भी दिख रहा है बाहर बहुत सारे पेड़े--

दिखाई दे रहे हैं कुछ छोटे और कुछ बड़े हैं ऊपर सफेद आसमान दिख रहा है।

पीली कोई कथाई कलर की दिख रही है और सामने कुछ पेड़े दिखाई दे रहे हैं और ग्राउंड है जिसमें नीचे पीली--

पहाड़ सा दिख रहा हैऔर जो ब्लैक एंड वाइट आसमान जैसा पूरा आसमान भी ब्लैक एंड वाइट --

यहां एक आदमी खड़ा देख रहा है जो सीढ़ियों पर खड़ा हुआ हैऔर सामने बड़ी नदी दिख रही है जिसका पानी--

के नीचे चके लगे हुए हैं और लाइट जल रही है नीचे जमीन भी नीली दिख रही है और सामने घज--

सूखी हुई घास दिख रही है दो ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और पेड़े दिख रहे हैं ऊपर आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

एक मंदिर दिख रहा है जिसमें नीचे लाल बीच में कथाई और ऊपर--

छोटे-छोटे पेड़े लगे हुए हैं सामने सड़क दिख रही है जो रंगीन है ऊपर सफेद आसमान--

दिख रहा है सामने कुछ बिल्डिंगें हैं जो कुछ क्रीम पीले कल्ल अं कत्थाई कलर की है और--

के टायर रखे हुए हैं बीच में पतले और अलग-अलग डिजाइन के टायर रखे हुए हैं नीचे को--

है और एक पेपर रखा हुआ है और टायरों पर नीली पनी लगी है।

बिछी है और दोनों साइड बहोत सारे रंगीन पर्दे लगे हुए हैं। ऊपर छत सफेद कलर की हैं जिसमें पंखे लगे हुए हैं और सामने एक--